एक रिक्शा भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ पोधे भी दिखाई दे रहे है। यहाँ पर आसमान दिखाई दे रहा है।

वहाँ पे कुछ खम्भे वगैरह दिखाई दे रहे हैं और गेट भी दिखाई दे रहा है।

नहा पे नीचे टेबल रखी हुई दिखाई दे रही है।